यह मंदिर है जिसका कलर गोल्डन कलर है गेट नंबर चार है इसके अंदर तीन आदमी हैं।

और दो पंखे व्हाइट कलर के लगे हुए हैं और चेयर रखी हुई हैं चार और एक मेज रखी हुई है लकड़ी की।

इसपे लिले कलर की लाइट जली हुई है और दो आदमी है एक पीले कलर की स्कूटी है।

और एल_सी_डी लगी हुई है और गेट का कलर ग्रे कलर है और च दीवार का कलर सफेद है।

ये एक हॉस्पिटल है। इसके हरि हॉस्पिटल नाम है इसका। इसके अंदर एक क्ल कार खड़ी हुई है वाइट कलर की।

यह एक डॉक्टर की दुकान है इसके अंदर तीन आदमी हैं एक औरत है दो और लोग लोग हैं।

पीछे आधी दवाई रखी है और इसकी इसने टाइल लगाई हुई है और डॉक्टर कुर्सी पर बैठा है।

ये एक सड़क पर सारे आदमियों की भीड़ लगी हुई है।

और चारों तरफ जाल लगा हुआ है।

दो गद्दे और दो तकिए और बहुत सारे सामान रखे गए

और दीवार का कलर व्हाइट है और छत का है।

ये एक बहुत बड़ा घर है जिसके अंदर बहुत सारे अ तीन चार आदमी हैं और गमला धरा हुआ है।

ये एक सड़क पर खड़े हुए तीन रिक्शे हैं एक आदमी है।

इसके अंदर दो आदमी खड़ा है एक बाइक पर सड़क पर खड़ा है।

और नि पीछे दीवार पर प्लास्टर और पेंट नहीं हुआ हुआ है।

ये एक मैरिज हॉल है। इसके अंदर एक लड़का एक लड़की फोटो खिंचवा रहे हैं और पीछे बहोत सारे लोग हैं।

ये एक पेट्रोल पंप है। इसके अंद इसकी व्हाइट छत है। इसमें रंग बिरंगी लाइट जली हुई है।

यह एक पैलेस का गेट हाउस है इसके बो अंदर नीचे मै मैट बिछे हुए है और बहोत सारी डेकोरेशन हुई हुई है।

ये एक ऑफिस है इसके अंदर पांच छ कुर्सियां रखी हुई है।

और इसका मदरसे का कलर वाइट कलर लगा है।

ये एक झरना है पहाड़ों के बीच।

और एक टैंक रखा हुआ पीले कलर का।

और इसकी छत छत का कलर सब व्हाइट क्रीम कलर का है।

और एक लैपटॉप और दो पौधे गमले रखे हुए हैं।

ओ इसने पिंक कलर के कपड़े पहन रखे हुए है।